इस कमरे के ऊपर एक बोर्ड लगा है।

यह एक मंच रव्वर स्टेशनरी दुकान है यहाँ सभी प्रकार के--

ये एक प्लांट फैशन मॉल है यहाँ पे बहुत सारे फैंसी ड्रेस पाए जाते है यहाँ हर प्रकार के --

ये एक रेलवे स्टेशन है ।